पेड़-पौधे हैं ऊपर सुंदर आसमान है लोहे की रेलिंग लगी है फव्वारा है।

ग्राउन्ड है लोग खड़े है फुटबॉल की जाली लगी है।

टेबल पर तेल की दबकिया रखी है बोतल रखी है।